पिलर का कलर ब्लू ग्रीन येलो पिंक है।

और एक स्वीमिंग पूल है उसमें पानी भरा हुआ है।

ये एक मॉल है माॅल के अंदर चॉकलेट आइस्क्रीम बिस्किट केक और बर्तन खिलौने शहद हर चीज बैग हर चीज मिलती है लॉलीपॉप ।

बगल में खंबा खड़ा है उसके बगल में घास है बाहर मौरंग पड़ी है गड्ढा है।

एक ये बेकरी है उसपे लिखा हुआ कोयल बेकरी ।

केक कोल्ड ड्रिंक पिज़्ज़ा बर्गर हर चीज़ मिलती हैं यहाँ।

साफ सफाई है नीचे फर्श है दरवाजा है काउंटर पे आदमी बैठा हुआ है वो बुक्स दे रहा है औरत को।

स्कूल के बाहर बच्चे खेल रहे हैं दौड़ रहे है।

एक घर है घर के बाहर छोटी सी ठेलिया खड़ी है।

ये घर बन रहा है घर के ऊपर मजदूर लोग हैं बांस है पटरे हैं बोरी है बैनर है।

कैमरा लगा है ए_सी भी लगी हुई है काउंटर पे औरत है स्लीपर भी मिलती हैं।

छोटे बड़े साइज के कपड़े भी मिल जाते हैं और साफ सफाई भी है।

सोफ़े का कलर ब्राउन्ड है। काउंटर पे लैपटॉप कंप्यूटर रखा हुआ है। शीशा लगा है उसका कलर ब्राउन्ड है।

टीन खड़ी है टीन के ऊपर बैनर लगा हुआ है।

बहुत बड़ी पल्ली है उसका कलर रेड है ऑरेंज येलो है मेज पे कुछ रखा हुआ है।

रंग बिरंगी लाइट जल रही चेयर रखी हैं चेयर पर आदमी बैठा है स्टूल है।

छोटे छोटे तंबू लगे हुए हैं बाहर बोर्ड भी रखा हुआ है।

एक बच्चा है वो खेल रहा है एक औरत खड़े हो के प्रार्थना कर रही है एक आदमी बैठा हुआ है एक छोटी सी कुर्सी रखी हुई है।

ये जिम है जिम के अंदर बहुत लोग खड़े हैं जेंट्स लेडिस तरह तरह के एक्सरसाइज की मशीनें है।

लाइट जल रही है शीशे लगे हुए हैं काउंटर है काउंटर पे आदमी बैठे हैं औरता खड़ी हैं साफ सुथरी है।

आस पास बहोत सारे पेड़ है बैठने की जगह है बड़ी बड़ी इमारते हैं।

टेबल भी है वेटर भी हैं ऐ_सी है पंखा है।

पेट्रोल पंप की मशीन भी दिख रही है। बाहर अंधेरा भी है।